ये ए_टी_एम है यहाँ पर लिखा है यूनियन बैंक यहाँ पे पैसे निकाले जाते हैं जो और ये नया नया खुला है ।

जहाँ पे मुझे लगी बाहर ब्लू कलर की अंदर एक कंप्यूटर रखा है और यहाँ शीशा लगा है शीशे लगे हैं शीशे ही गेट है।

रूम यहाँ पर एक बेड है जिसपे ग्रीन कलर की चादर बिछी है दो कम्बल रखे है दो तकिया रखी है और एक अलमारी रखी --